यह एक किसी प्रकार की मशीन रखी हुई है जो की एक इमारत में बनी हुई है इसमें खिड़कियों से बहुत उजाला आ रहा है।

यहाँ पे एक अ बैठने के लिए सजावट की गई है। इसमें की यह एक बिल्डिंग है। इसमें कई सारे गुब्बारे लगे हैं। गुब्बारे नीले और सफेद कलर और लाल कलर के हैं।

लाइटें जल रहीं हैं। कुछ नीली जल रहीं हैं कुछ व्हाइट जल रहीं हैं।

यहाँ पे तालाब टाइप का दिख रहा है अगल-बगल काला कचरा लगा हुआ है कई सारी इमारतें दिख रही हैं कई सारे पेड़ दिख रहे हैं।